नमस्कार !
scilab उपयोग करके optimization of linear functions with linear constraints पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे:
optimization का क्या मतलब होता है
और ऑप्टिमाइज़ेशन में scilab function karmarkar कैसे उपयोग करते हैं
optimization का मतलब
दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज़ या मॅक्सिमाइज़ करना है
डिसिशन वेरिएबल को परिवर्तित वैरी करके जो कभीकभी cost function भी कहलाता है
डिसिशन वेरिएबल्स पहले से परिभाषित कन्स्ट्रेंट्स के अनुसार बदले जाते हैं
ये कंस्ट्रेंट्स वेरिएबल्स के कुछ फंक्शन्स की फॉर्म में भी होते हैं
optimization व्यापक रूप से ज़्यादातर एन्जनीरिंग और नॉनएन्जनीरिंग क्षेत्रों में उपयोग होता है जैसे:
इकॉनॉमिक्स
कंट्रोल थ्योरी और
ऑपरेशंस और रिसर्च
scilab फंक्शन karmarkar निम्न में उपयोग होता है:
डिसिशन वेरिएबल्स पर लीनियर कंस्ट्रेंट्स के अनुसार लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने में
हम karmarkar फंक्शन प्रयोग करके निम्न उदाहरणों को हल करेंगे:
निम्न इक्वेशन्स के लिए
2 x 1 प्लस x 2 प्लस x 3 लैस दैन और इक्वल टू 2
x 1 प्लस 2 x 2 प्लस 3 x 3 लैस दैन और इक्वल टू 5
2 x 1 प्लस 2 x 2 प्लस x 3 लैस दैन और इक्वल टू 6
जहाँ x 1 x 2 x 3 सभी ज़ीरो से बड़े या बराबर हैं
ध्यान दें कि सारे फंक्शन्स चाहें वो सामान्य हों या प्रतिबंधित लीनियर होते हैं
दी गयी प्रॉब्लम को हल करने से पहले scilab कंसोल पर जाएँ और टाइप करें:
help karmarkar
और enter दबाएं
आप help browser में आर्ग्युमेंट्स का कॉलिंग क्रम
उन आर्ग्युमेंट का स्पष्टीकरण विवरण और कुछ उदाहरण देख सकते हैं
हेल्प ब्राउज़र को बंद करें
यहाँ हम इनपुट और आउटपुट आर्ग्युमेंट्स को सारांशित करेंगे
आउटपुट आर्ग्युमेंट्स हैं xopt fopt exitflag iter yopt
x opt: ऑप्टिमम यानि सर्वोत्कृष्ट सॉल्यूशन है
f opt: ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है
exitflag : निष्पादन का स्टेटस है यह पहचानने में मदद करता है कि एल्गोरिदम कन्वर्ज यानि अभिसारित हो रहा है या नहीं
iter :xopt तक पहुँचने के लिए आवश्यक इटरेशन्स की संख्या है
yopt : डूअल सॉल्यूशन रखने वाली संरचना है
यह lagrange मल्टीप्लायर्स देता है
इनपुट आर्ग्युमेंट्स हैं aeq beq c x zero rtolf gam maxiter outfun a b lb और ub
aeq : लीनियर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में मेट्रिक्स है
beq : लीनियर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट का दायां भाग है
c : x का लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट्स है
x0 : इनिशियल गेसguessयानि प्रारम्भिक अनुमान है
rtolf : f of x इज़ इक्वल तो c ट्रांसपोज़ मल्टिप्लाइड बाइ x पर रिलेटिव टॉलरेंस है
gam : स्केलिंग फैक्टर है
maxiter : इटरेशन्स की अधिकतम संख्या है जिसके बाद आउटपुट रिटर्न होता है
outfun : अतिरिक्त यूज़र डिफाइंड आउटपुट फंक्शन है
a : लीनियर इनिक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स की मेट्रिक्स है
b :लीनियर इनिक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स का दायां भाग है
lb : x का लोअर बाउंड यानी निचली सीमा है
ub x का अपर बाउंड यानी उच्चतम सीमा है
अब हम karmarkar फंक्शन प्रयोग करके scilab में दिए गए उदाहरण को हल कर सकते हैं
scilab कंसोल पर जाएँ और टाइप करें:
a इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 2 स्पेस 1 स्पेस 1 सेमीकोलन 1 स्पेस 2 स्पेस 3 सेमीकोलन 2 स्पेस 2 स्पेस 1 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
और enter दबाएं
उसी प्रकार टाइप करें : स्मॉल b इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 2 सेमीकोलन 5 सेमीकोलन 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
और enter दबाएं
टाइप करें: c इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें माइनस 3 सेमीकोलन माइनस 1 सेमीकोलन माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
और enter दबाएं
टाइप करें: lb इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 0 सेमीकोलन 0 सेमीकोलन 0 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
और enter दबाएं
अब clc कमांड प्रयोग करके कंसोल को क्लियर करें
टाइप करें: स्क्वायर ब्रैकेट खोलें x opt कॉमा f opt कॉमा exitflag कॉमा iter स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें इज़ इक्वल्स टू karmarkar ब्रैकेट खोलें स्क्वायर ब्रैकेट खोलें स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट खोलें स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें कॉमा c कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट खोलें स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट खोलें स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट खोलें स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट खोलें स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट खोलें स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें कॉमा कैपिटल a कॉमा स्मॉल b कॉमा lb ब्रैकेट बंद करें
और enter दबाएं
डिस्प्ले को जारी रखने के लिए एंटर की key दबाएं
यह स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह आउटपुट देगा
जहाँ xopt प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन है
fopt ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है जिसकी गणना ऑप्टिमम सॉल्यूशन x इज़ इक्वल टू xopt पर की जाती है
और ऑप्टिमम सॉल्यूशन xopt तक पहुँचने के लिए आवश्यक इटरेशन्स की संख्या 70 है
यह ज़रूरी है कि फ़ंक्शन को कॉल करते समय उसी ऑर्डर में इनपुट अर्गुमेंट्स को दिया जाए जिसमें वो ऊपर सूचीबद्ध हैं
इस tutorial में हमने सीखा:
optimization क्या होता है
लीनियर प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ऑप्टिमाइज़ेशन में scilab function karmarkar का उपयोग
scilab टीम से संपर्क करने के लिए कृपया contact@scilabin पर लिखें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
spoken tutorial project team:
स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग अकरके कार्यशालाएं चलाती है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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए spokentutorialorg/nmeictintro पर उपलब्ध है
आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद